और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

और बोहत सारी कुर्सिया दिखाई दे रही है जिसमे प्लास्टिक लगा हुआ है जो वाइट कलर का है और ऑरेंज कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है जिसमे कुछ घास उग्गे हुए है जो ग्रीन कलर के है।

और कुछ दीवारे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर का है और कुछ घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर के है।

इसमें सुपा दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

और कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे है और कुछ झंडे दिखाई दे रहे है जो रेड कलर के है येलो कलर के है पिंक कलर के है ग्रीन कलर के है ब्लू कलर के है।

और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है ब्लैक कलर के है वाइट कलर के है ब्लू कलर के है रेड कलर के है।

और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है और वाइट कलर का हैं।

और एक पेड़ का टहनी दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट कलर का है और एक घर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और ब्लू कलर का है।

और कुछ स्कूटी और बाइक दिखाई दे रहे है कुछ वाइट कलर के है और ब्लैक कलर के है।